इस इमेज में एक बड़ा -सा तालाब दिखाई दे रहा है तालाब के लेफ्ट राइट और सामने उम -उम बहुत सारी घास लगे हुए दिखाई दे रही हैं ।

इस इमेज में एक बड़ा- सा समंदर दिखाई दे रहा है समंदर के सामने कुछ छोटे-छोटे पहाड़ दिखाई दे रहे है समंदर के साइड में --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

पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे बलून लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे बच्चे लोग कुछ बनाते हुए दिखाई दे रहे है उनके टीचर उनको देखते हुए दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है बैलून लगे हुए दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े--

इस इमेज में एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है इस स्टेज पे भी बहुत--

काम करते हुए दिखाई दे रहे है उनके सर उनको देखते हुए दिखाई दे रहे है उनके सर के हाथ मे--

इस इमेज मे सड़क दिखाई दे रही है सड़क के बीच मे झंडा--

यहाँ पे पंडित जी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे है थाली मे कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

तुलसी जी पे गन्ने लगे हुए दिखाई दे रहे है ।

सिर्फ सब्जिया रखी हुई दिखाई दे रही है शॉप के बाहर--

दो भवन दिखाई दे रहे है मैदान मे छोटे-छोटे घाँस लगे हुए दिखाई दे रही है कुछ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।